ये एक मस्जिद हैं मस्जिद पे लोहे की सीढ़ियां लगी हुई हैं।

उसके आस-पास गाडियां भी खड़ी है और मस्जिद के पास एक किराने की दुकान भी हैं जहां पर बहुत सारा सामान टंगा हुआ है और यहां पर एक ऑटो भी खड़ा है जो काले और पीले रंग का है।

इस पर दो चम्मच रखे हैं और उस पर खाने का समान रखा हुआ हैं।

यहाँ एक बडा सा काँच भी लगा हुआ है यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की ट्यूब लाइट भी लगी हुई है।

ये एक कमरा है यहा पर दीवार पर दो सीनरिया लगी है।

जिससे गड्डा खुद रहा है यहां पर तीन-चार आदमी खड़े हुए हैं और यह देख रहे हैं।

एक सड़क है | सड़क के किनारे घर बने हुए हैं | यहाँ पर एगो बिजली का खम्भा भी बना हुआ है | यहाँ पर एक बाईक भी खड़ी हुई है।